ये सिटी हॉस्पिटल है जामताड़ा का और यहा पे बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जाता है रोगियों का और यहां पे बहुत अच्छे-अच्छे डॉक्टर रहते है और दूर-दूर के लोग यहां इलाज कराने आते है और यहां पे काफी अच्छी इलाज होती है।

जैसे की शादी मे--

और काफी अच्छा लगता है नाव मे छड़ने मे--